कूदने के लिए भी जाते हैं।

आंटा दिया गया हे और पीलर खड़े किये गए हे और इस घर को पूरा बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा है ।

यह एक फल का दुकान है।

जंगल में बहुत प्रकार के जानवर भी रहते हैं और बहुत प्रकार के पक्षी भी रह --